इस इमेज में एक बेड है।

है और एक डिब्बा भी है प्लास्टिक का।

जो कि चौकोर हैं और कुछ पत्तियां लंबी हैं।

रात हो रही है और बहोत सारी मोमबत्तीया जली हुई हैं।

एक टुल्लू पंप भी हैं और दो आदमी हैं।

और कुछ पट्टे से पड़े हुए हैं।

और बहोत सारे पत्ते हैं पेड़ के पानी भरा हुआ सड़क पर।

बहुत सारे पेड़ भी है यहां पर।

इस इमेज में एक बाइक खड़ी है।

छोटी धरी हुई हैं पेंट की।

और लोहे के डिब्बे भी हैं पेंट के यहां पर और एक चेयर कोने पे आया हुआ है।

और लोहे के पिलर भी खड़े हैं बोहोत सारे और सरिए भी हैं यहाँ बोहोत सारे।

और इंडिया के फ्लैग भी हैं और बहुत सारी चेयर हैं टेबल हैं।

और कप भी है और बहुत सारे पोस्टर लगे हुए--

गुब्बारे भी है बहुत सारे लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है चेयर भी प्लास्टिक --

और बराबर में एक गाड़ी खड़ी हुई है।

इस इमेज में दो गाड़ी है और बहोत सारे टैटू बने हुए हैं नाम लिखा हुआ है।

और एक औरत है एक कुर्सी पे बैठी हुई है।

इस इमेज में ये जगह और उसमें बहुत सारा पानी है और तीन कछुए हैं।

और कछुए हैं एक कछु अराम से लोटा है।

और एक सीढ़ी भी है सीढ़ी पर बंधे हुए हैं।

और टेबल जो है टेबल जॉइंट है।

ब्लू वाइट कलर की टेबल है।

और बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

पीछे वुडन का स्ट्रेट बना हुआ है डिजाइन ।

और अच्छा कलर हुआ है ऊपर एक डिजाइन बना हुआ--

बहुत सारी पत्तियां है ऊपर छत पर।

इस इमेज में बहोत सा एक दुकान है और उसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

इस इमेज में जगह है उसमें रात हो रही है।

लाइट जल रही है व्हाइट कलर की और एक खम्भा भी है उसके ऊपर लाइट है।

एक स्टोर लिखा हुआ है यहाँ--

रेस्टोरेंट भी है यहां पर।

और पत्ते है और लेग लाइट है बहोत सारी।

लोहे के पिलर है और--

ये बड़ा सामने बिल्डिंग है सीढ़िया है बहुत सारी।

आदमी हैं बहोत सारे यहां पर का पेड़ की पत्ती भी आई हुई--

बच्चों का अस्पताल है और बहोत सारे लोहे के तार हैं।

और एक बाइक पर है और एक वैन है कूड़ा उठाने की।

इस इमेज में एक कमरा है। कमरे में हार्ट की पोस पोस पोस्टर लगी हुई है और लगी है।

पोस्टर लगा हुआ है और बेड का हुआ है छोटा सा गेट है एक।

टावर है और बहुत सारे पेड़ भी हैं और दो आदमी हैं और बहुत तीन नाव है।

बहुत सारी भीड़ जमा हो रही है।

और उसके बराबर में एक घर है और पेड़ बहुत सारे पेड़ रखे हुए हैं।

वो बहोत से पिलर है और एक बेड भी है यहां पर--

गाड़ी का पार्ट रखे हुए हैं पीछे भी एक गाड़ी है।

बोर्ड के बराबर में एक तस्वीर लगी हुई है।

दो जन पूल में नहा रहे हैं यहां पर।

एक मन्दिर है और श्री मुक्तेश्वर मंदिर है।

और बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है गेट का।

लाइन वाइज रखे हुए हैं पीछे बोहोत सारी बोतल है छोटी-छोटी।

इसमें जो सेंटर बैंक ऑफ़ इंडिया है।

और ग्लास भी लगे हुए हैं बहुत सारे।

और एक सोफे भी है।

पेपर डायमंड लगे हुए हैं और एक डिजाइन बना हुआ है।